यह एक कैफे है जिसका नाम द सिटी कैफे है जिसके सा--

यह प्रियॉन्स है जिससे बहुत सारे लोगों एलर्जी भी रहती हैं यह एक समुद्री--

बहोत ही अच्छी लाइटिंग की गई है इसमें बहोत सारे चेयर अरेंजमेंट है चेयर का कलर --

यह भारत फैशन हाउस है जहां पर अलग अलग प्रकार के--

और हर एक क्यारी बनी हुई है।

एक हेल्पर दिखाई दे रहा है और भी बहोत सारे अलग अलग मॉडल के कार व बाइक खड़े हुए हैं यह दिखने--

और इसके बाजू में अच्छा सा पार्किंग दिया गया है और बहुत ही अच्छा इसका इंटीरियर है।

और साथ ही साथ इसके आस पास सभी लोग दुकान लगाए हुए हैं।

सफाई कर रहे है यहां पे दो वर्कर दिखाई पड़ रहे है जिनमे एक अपने फोन में बात करता हुआ--

जो की दाना चुभने के लिए देख रहे हैं इनके बाजू में ही टब वह गमले में छोटे छोटे--

यह एक कपड़े की दुकान है।

यहां पे बहुत सारे लोगों की--

पिंक कलर का हल्का सा है।

इनका पेड़ अलग तरीका दिखाई देता है।

व्यवस्था दी गई है ताकी बच्चे शांति से पढ़ाई कर सकें।